पूजा करने के लिए लोग --

सारे धर्म के लोग आए हुए हैं ।

छोटे-मोटे सामान बेचते हैं यहाँ पे बाबू --

यह एक बैंक है । इस बैंक में बहुत सारी भीड़ --

बरसात मैदान में घुमने फिरने के लिए आते हैंघुमने फिरने में --

मॉल मे भीड़ लगी हुई रहती है --